यहाँ पर बहोत सारे लोग बच्चे लोग आते हैं और अपना प्रतिक्षण करके जाते भी हैं यहाँ से बहोत ही अच्छा --

जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे कैनाल के थ्रू पानी पहुंचाया जाता है और किसानो को खेत में राहत मिलती है हर किसी को ऐसा काम करने में सहायता करना चाहिए।

हर किसको अपना घर ऐसे ही बनाना चाहिए पार्क के बगल में क्यूंकि बच्चे जब घर से निकलेंगे तो पार्क में जायेंगे और पार्क में खेलेंगे क्यूंकि अभी का समय में फाइव जी आ जाने के कारण सारे बच्चे मोबाइल में ही बीजी रहते हैं ।

यह एक कपड़ा का दुकान है। इस दुकान का नाम पैन अमेरिका रखा गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं। यहाँ पर तरह-तरह के कपड़ा मम मिलता है। यहाँ पर --

बच्चे बूढ़े महिला लड़की इत्यादि सभों का कपडा मिलता है बहोत ही सस् सस्ते में।

यह एक तलाब है। इस तलाब में बहुत ही पानी --

एक एक है रखा गया है ट्री मैंगो जिसका दाम पाँच रूपया है और ज दूसरा मीट मसाला है जिसका भी दाम पाँच रूपया रखा गया हैऔर एक सोनी है जो खैनी है ।